नीचे चटाई बिछी हुई है जो रेड कलर की है यहाँ पर माइक लगे हुए है पंखा लगा हुआ है सफ़ेद कलर का ऊपर छत दिखाई---

उसमें आई_सी_आई बैंक लिखा हुआ यहाँ सामने बहुत सारी बाइक स्कूटी और साइकिल दिखाई दे रही है सामने खुला आसमान दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर --

एक नदी का सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है यहाँ पर एक पुल बना हुआ है।

दीवाल दिखाई दे रही है जो ऑरेंज और रेड कलर से पुती हुई-- ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले कलर का है यह देखने--

मे एक फोटो दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है जिसकी एक टायर दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है इसमें कांच लगे हुए है यह अच्छे तरह डेकोरेट --

यह सामने बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर साईकल रिक्छा भी दिखाई--

यह सामने-सामने एक बहोत बड़ा सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है जिसमे टाइल्स लगी हुई है यहाँ पर बहोत सारी मोटर साइकिल खड़ी---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

यहाँ पर एक सामने सीन दिखाई दे रहा है इसमें एस_बी _आई पोस्टर में एक एस_बी_आई लिखा हुआ है इसमें हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।

यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है जो बैंक नए यहाँ पर ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है बाजू में एक जीप खड़ी हुई है यहाँ पर सामने मैदान दिखाई दे रहा है वृक्ष लगे हुए हैं जो की ग्रीन --

एक प्रतिमा दिखाई दे रही है जिसमे म-म मु यहाँ पर बहोत सारी मुडडी दिखाई दे रही है।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

एक सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पर बोहोत सारे आदमी दिखाई--